यहाँ अनजाना डेरी कुछ लिखाया हुआ है यहाँ कुछ --

दूध मिलता होगा शायद इसीलिए यहाँ रात को भी लोग इंतजार कर रहे हैं और खरीद रहे हैं और बहुत ज्यादा भीड़ है और यहाँ कुछ गाड़ी उड़ी भी लगी है सामने जैसे कि कुछ ऑटो है और कुछ सफेद कलर की स्कूटी लगा हुआ है।

जैसे जैसे जैसे रेंज का है आप को उस रेंज का लेना चाहोगे दाम का --

यहाँ बुध मंदिर है यहाँ मेन पार्ट का है मैंने यहाँ गया था और ये सबको सामने से देखा हूं मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा मोबाइल में भी ये सब दिख रहा है तो --

यह छोटा सा रूम जैसा बना है इसमें कुछ काम वाम होता है जैसे लग रहा है और इसको कांच का खिड़की लगा दिया गया है यह कोई मंदिर वन्दिर जैसा है और यहाँ हाता हुता लगा हुआ है पीछे पेड़-वेड़ है और --

यहाँ कुछ माला वाला का दुकान है यहाँ माला बहुत सुंदर दिख रहे है उधर गेंदा गेंदा फूल भी लगा हुआ हैयहाँ कुछ --